कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है आसमान दिखाई।

यहां एक बुक शॉप दिखाई --

चेयर दिखाई दे रही है और कुछ अलमीरा दिखाई--

दे रहे हैं जिन्हे की एक के ऊपर दूसरे को रखा हुआ दिख रहा है।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

दे रहा है जहां पर बहोत से--

पूजा का सामान नजर आ रहा है।

यहां पर एक बहुत सुंदर--

बड़े बड़े विंडोज नजर आ रहे हैं।

जंगल नजर आ रहा है बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

यहां पर सब्जी मार्केट नजर आ रहा है यहां पर बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

और कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है।